और पेड़ पौ पेड़ लगे हुए है स्कूल के पीछे हरे रंग के पेड़ दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर में हमे एक मूर्ति नजर आ रही है जो गोल्डन कलर की है मूर्ति के आगे एक रैलिंग है जो रेड कलर की है तरफ़ मैदान नजर आ रहा है जिसमे घास लगी हुई है।

इस इमेज मे हमे बहुत सारे घर दीखाई दे रहे है घर के आसपास बहुत बड़े बड़े पेड़ दिख रहे है और पास मे ही बड़ी बड़ी बिल्डिंगे दिखाई दे रही है जो सफ़ेद रंग की है।

इस इमेज मे हमे रेल्वे ट्रैक दिखाई दे रहे है। रेल्वे ट्रैक के बाजूमे रे-रेल्वे प्लॅटफॉर्म है और एक ब्रिज भी दिखाई दे रहा है। जो सफ़ेद रंग का है। प्लेटफॉर्म की छत का कलर नीला --

और आस-पास मे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे आसमान दिखाई दे रहा है जो सफ़ेद रंग का है और सूरज दिखाई दे--

और उसके पास मे पौधे लगे हुए है पास मे एक छत है जिसका कलर लाल है।